और ये मैं पहले बार देख रहा हूँ लगता है कुछ-कुछ ख़ास-ख़ास बगीचा भी है आम का पेड़ है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है।

बहूत बड़ा झरना जैसा दिख रहा है। पहाड़ जैसा गिर रहा है पानी।

ये बिहार का हमारा प्रदुषण कण्ट्रोल आफिस --